ए गमला में टांगल हइन। ए खूब सुन्दर लगई छैन ई खूब उब अच्छा लगई छैन।

ई पेड़ हई ओने घर हई। ई कूड़ा कचरा फेकल हई अथी ओछ मकान के ऊपर कपड़ा लत्ता पसरल हइन। उ फूल हइन।